यहाँ एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है टेंट के अन्दर अलग-अलग कलर की लाइटस लगी हुई हैं।

ये एक वी-मार्ट की बींट बिल्डिंग है।

बगल में बैठी हुईं है। एक बच्ची और एक आदमी एक टिफ़िन देख रहे हैं।